देखने से मंदिर लग रहा है लेकिन मंदिर का छोटा सा अवशेष हैजो प्राचीन मूर्तियों जैसा दिख रहा है।

ये देख के थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि ये स्कूल है या होस्टल --